सामने आईना भी है उसका कलर रेड है।

एक रूम है रूम के अंदर बहोत सारे बच्चे हैं।

दिवारी के बाहर एक ब्लैक कलर की एक्टिवा लगी है।

और इसके बाहर बहुत बड़ा एक बिजली का टावर लगा हुआ है।